और आसमान भी नजर आ रहा है और कुछ पेड़ की नजर आ रहे हैं।

इस दुकान की दीवारे और इसकी छत लोहे की बनी हुई है।

चार ऐसी भी लगे हुए हैं नीचे एक ए_टी_एम भी लगाया हुआ है।

यहां से कुछ चीजें सामने दिख रही है एक बोर्ड दिख रहा है।

सुजका और यहां पे एक दरवाजा नजर आ रहा है और यहां पे कुछ पिलर्स भी हैं।

इस तस्वीर में पांच औरते मैट पर बैठी योगा कर रही है।

सामने शीशा है जिस पर उनकी परछाई नजर आ रही है।

ये एक गुरुद्वारा है जहां पर फूल भी रखे हुए है।

दीवार पर कुछ चार्ट भी लगाए हुए हैं दरवाजा बंद है।

डैम के पास चार मरद है एक आदमी दूसरे आदमी को पानी दे रहा है।

बड़े बड़े पेड़ भी है और एक छोटा सा मकान भी है।

सीढ़ियां भी नजर आ रही है दीवारों पर तस्वीरें भी है।

ये एक ढाबा है जिस की दीवार पर लिखा हुआ है।

उस अलमारी पर चीजें सजाई हुई है।

इस तस्वीर में अलमारी है जिसमें रंगों के बहोत डब्बे भरे हुए हैं।

सभी लड़कियां बाहर खुले वातावरण में पेड़ों और पीले रंग की पृष्ठभूमि के सामने कतार बद्ध होकर बैठी और खड़ी हैं।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

सामने भी एक टेबल है जिस पर दो बोटलें रखी हुई है।

तीसरी अलमारी का रंग काला है चौथीं अलमारी का रंग लाल है और कुछ संदूक भी रखे हुए हैं।

एक मर्द पीछे खड़ा हुआ है एक पिलर के साथ खड़ा हुआ है।

तस्वीर में जो पौधे दिखाई दे रहे हैं विकरूटन प्रजाति के है।

छत पर एक लाइट भी लगाई हुई है और फैन भी लगाए हुए हैं।